परछाई दिख रही है और कपड़े के दुकान में भी भीड़ है।

दो केक रखे हुए हैं पीले रंग के गुलाबी रंग से।

सामने एक पुरुष नजर आ रहा है नीले रंग का उसके पीछे एक बच्चा है सामने में एक बालक है और एक औरत भी नजर आ रही है।

यहां पे सेल्स नजर आ रहा है सब में सेल्स में तीस चालीस पचास परसेंट की छूट की सेल्स है।

ढेर सारे बड़े बड़े विशाल पेड़ है यहां पे--

इसके पीछे एक छोटा सा गूंगटी बना है रात का समय हो रहा है ।

यहां पे ढेर सारे घर बने हुए हैं पेड़ लगे हुए हैं पेड़ पौधे यहां पे एक रोड भी है।

खिड़कियां लगी हुई हैं सब बंद है गेट खुले हैं।

नीचे कुछ खाने की तस्वीर बनी हुई है विभिन्न विभिन्न प्रकार के खाने की।

ये एक घर का तस्वीर दिखाया गया है बहुत सारे बैलून लगी हुई है।

दो बालक यहां पे नृत्य कर रहे हैं दोनों ने नीले और हल्के हरे कपड़े पहने हैं जूते पेंट ।

गुलाबी रंग से एक स्कूल ब बच्चों की बनाई गई है नीले रंग की गेट है।

यहां पे कुछ बैटरियां हैं बड़े बड़े डिब्बे में खाने की चीज हैं।

सामने एक टेबल लगी हुई है कुछ कुर्सियां हैं कुछ महिला है।

ये एक बड़ा सा बिल्डिंग है ढेर सारी रेलियां है।

पीछे तरफ में ढेर सारे पेड़ पौधे और एक बड़ा सा बिल्डिंग नजर आ रहा है।

इस चित्र में ढेर सारे पेड़ पौधे हैं मंदिर के पास बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

यहां पे पुरुष महिला बच्चे सब आते हैं पीछे नदी है।